एक बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी लाइट लगी हैं।

सामने एक बेडरूम दिखाई दे रहा है जिसमे सफेद उम कलर है उम भो परदे टंगे हुए है।

सामने बहुत सारी सब्जी की दुकान है जिसमें बहुत सारी सब्जी रखी हुई है।

हमने एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमे लाइट लगी है ट्यूबलाइट लगी है पंखे लगे हैं टेबल-कुर्सी रखी हुई हैं जिन पर बहुत सी उम_उम बच्चे बैठे हुए हैं ।

और रोड़ है जिसपर कुछ दुकान लगी हुई हैं और बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं | उम खंबे दिखाई दे रहे हैं तार दिखाई दे रहे हैं।

सामने कपड़ों की दुकान है जो सफेद अंदर से सफेद रंग हैं उम्म रैक बनी हुई है जिनमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं कुछ कपड़े टँगे हुए--

एक हॉल है जिसमें टाइलस लगी है उम्म सफेद दीवार है जिस पर एक फोटो टंगी हुई है।

मम संतरे रखें हैंअनार रखें हैं सेब रखे हैं केले टंगे हुए हैं | मम और कुछ आदमी खरीद रहें है।